बहुत बड़ी चीज है यहां पर --

इस फोटो में--

बहोत सारे पेड़ लगे--

इस पिक्चर में दिख--

एक ब्लैक कार जिसमें सर्विस हो रही है।

बहोत सारे पानी के ग्लास रखे।

पिक्चर में यहां पर--